जावा में do व्हाइल लूप के स्पोकन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है
इस ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे कि do व्हाइल लूप और इसे कैसे प्रयोग करें
इस ट्यूटोरियल के लिए हम प्रयोग करेंगे उबुंटू 1110 जेडीके 16 और इक्लिप्स 37 इस ट्यूटोरियल को समझने के लिए आपको जावा में व्हाइल लूप का ज्ञान होना चाहिए
यदि नहीं तो उचित ट्यूटोरियल के लिए कृपया हमारी निम्न वेबसाइट पर जाएँ
यहाँ do व्हाइल लूप के लिए एक स्ट्रक्चर दिया गया है
ध्यान दें कि यह व्हाइल लूप के समान है
इसके दो भाग हैं
प्रथम लूप रनिंग कंडीशन है
और दूसरा लूप वैरिएबल है
एकमात्र अंतर यह है कि कंडीशन को डीओ ब्लॉक के बाद लिखा जाता है
और इसलिए कंडीशन की जांच डीओ ब्लॉक के अंदर लिखे गए कथन के निष्पादन के बाद की जाती है
अब एक उदाहरण देखते हैं
इक्लिप्स पर जाएँ
यहाँ हमारे पास इक्लिप्स इडे है और शेष कोड के लिए स्केलेटन की आवश्यकता होती है
हमने एक क्लास डोव्हिलेडेमो बनाया है और इसमें मुख्य विधि को जोड़ दिया है
हम do व्हाइल लूप का प्रयोग करके 1 से 10 तक की संख्याओं को प्रिंट करना चाहते हैं
टाइप करें
इंट एन इक्वाल्टो 1 एन लूप वैरिएबल है
फिर डीओ टाइप करें ब्रैकेट्स खोलें और बंद करें
ब्रैकेट्स के अन्दर systemoutप्रिंटलन लिखें हम एन का मान प्रिंट करेंगे और फिर इसमें वृद्धि करेंगे
एन इक्वाल्टो एन प्लस 1 और हम ऐसा करेंगे अगर एन या तो 10 से कम है या बराबर है
ब्रैकेट्स के बाहर टाइप करें व्हाइल परेन्थिसिस के अन्दर और सेमीकॉलन का प्रयोग करके do व्हाइल को बंद करें
कार्यान्वित कोड को देखते हैं
सेव और रन करें
हम देखते हैं कि 1 से 10 तक की संख्याओं को प्रिंट किया गया है
अब देखते हैं कि कोड को कैसे निष्पादित करना है160
पहले मान 1 प्रिंट किया है और फिर एन 2 हो जाता है
और फिरकंडीशन की जांच की है
चूँकि यह ट्रू है इसलिए पुनः 2 प्रिंट होता है और एन 3 हो जाता है
और यह तब तक जारी रहता है जब तक सभी 10 संख्याएं प्रिंट होती है और फिरn का मान 11 हो जाता है
जब एन 11 होता है तो कंडीशन असफल हो जाती है और लूप रुक जाता है
अब घटते क्रम में 50 से 40 तक संख्याएं प्रिंट करें
अतः हम 50 से शुरू करते हैं
एन 1 को एन 50 से बदलें
चूँकि हम एक बड़ी संख्या से एक छोटी संख्या की ओर लूप कर रहे हैं हम लूप वैरिएबल को घटाते हैं
अतः एन एन 1 को एन एन 1 से बदलें हम तब तक लूप करते हैं जब तक एन 40 के बराबर या उससे अधिक है
अतः कंडीशन को एन gt 40 से बदलें
आउटपुट पर एक नजर डालते हैं
सेव और रन करें
जैसा कि हम देख सकते हैं कि 50 से 40 तक संख्याएं प्रिंट हो गई हैं
अब do व्हाइल लूप का प्रयोग करके एक भिन्न लॉजिक का प्रयोग करते हैं
दी गई एक संख्या में हम पता लगायेंगे कि यह एक पूर्ण वर्ग है या नहीं
सर्वप्रथम मेन मेथड को क्लियर करें
फिर टाइप करें इंट एन 25 हम देखेंगे कि एन का मान एक पूर्ण वर्ग है या नहीं
इसके बाद टाइप करें इंट एक्स 0 यदि एक संख्या पूर्ण वर्ग है तो हम एक्स का प्रयोग करेंगे उस संख्या को संचित करने के लिए
फिर डीओ टाइप करें
ब्रैकेट्स को खोलें और बंद करें
ब्रैकेट्स के अन्दर एक्स बराबर एक्स प्लस 1 और ब्रैकेट्स के बाहर व्हाइल परेन्थिसिस में एक्स इंटो एक्स एन और एक सेमीकॉलन का प्रयोग करके do व्हाइल को बंद करें
जब तक एक्स इन टूx एन से कम है हम एक्स के मान को बढ़ाना जारी रखते हैं
अतः जब लूप रुक जाता है तो इस स्थिति का विलोम ट्रू होगा
जिसका अर्थ है कि या तो एक्स इन टू एक्स एन के बराबर होना चाहिए
या इसे एन से बड़ा होना चाहिए
यदि एक्स इन टू एक्स एन के बराबर है तो संख्या पूर्ण वर्ग है
यदि यह एन के बराबर नहीं है तो संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है
अतः अंततः हम कंडीशन को प्रिंट करते हैं
Systemoutprintlnएक्स एक्स एन कोड को क्रियान्वित करके देखते हैं
सेव और रन करेंचूँकि हम देख सकते हैं कि आउटपुट ट्रू है दूसरे पूर्ण वर्ग के साथ इसका प्रयोग करके देखते हैं
एन 25 को एन 49 से बदलें सेव और रन करें
हम देखते हैं कि हमें पुनः ट्रू प्राप्त होता है
एक संख्या के साथ इसका प्रयोग करके देखते हैं जो पूर्ण वर्ग नहीं है
49 को 23 से बदलें
सेव और रन करें और हमें आशा के अनुरूप फॉल्स प्राप्त होता है
अब देखते हैं कि क्या होता है जब एन का मान 0 हो
एन 23 को एन 0 से बदलें चूँकि 0 एक प्राकृतिक संख्या नहीं है अतः हमें फॉल्स प्राप्त होना चाहिए
अब कोड को चलाते हैं
सेव और रन करें
हम देखते हैं कि हमें आशा के अनुरूप फॉल्स प्राप्त होता है
यह होता है क्योंकि कंडीशन से पहले भी एक्स इन टू एक्स एन से कम है जाँचा गया है एक्स का मान बढ़ गया है और यह 1 है
लूप कंडीशन फॉल्स हो जाती है और लूप नहीं चलता
इस प्रकार do व्हाइल लूप का प्रयोग करके हम यह सुनिश्चित करते हैं कि 0 को एक पूर्ण वर्ग नहीं माना जाता है
इस प्रकार do व्हाइल लूप को बहुत सी समस्याओं को हल करने के लिए प्रयोग किया गया है
विशेष रूप से जब लूप को कम से कम एक बार अवश्य संचालित होना चाहिए
इसके साथ हम इस ट्यूटोरियल की समाप्ति पर आ गया हैं
इस ट्यूटोरियल में हमने सीखा do व्हाइल लूप और इसका उपयोग करने के तरीके के बारे में
इस ट्यूटोरियल के लिए एक नियत कार्य के रूप में निम्नलिखित समस्याओं को हल करें एक बाइनरी संख्या दी गई है इसका डेसीमल समकक्ष ज्ञात करें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
अच्छी बैंडविड्थ न मिलने पर आप इसको डाउनलोड करके देख सकते हैं
स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट टीम स्पोकन ट्यूटोरियल्स का उपयोग करके कार्यशालाएँ चलती है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
यह स्क्रिप्ट प्रभाकर द्वारा अनुवादित है
मैं श्रुति आर्य अब आपसे विदा लेती हूँ
हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद